एक व्यक्ति हेलमेट लेकर के गेट के तरफ खड़ा है कोई एक बूढ़ा व्यक्ति--

की रेड कलर वाला बहुत खूबसूरत है जिसको ई रिक्शा के नाम से भी जानते हैं।

गैरेज मालिक मोटर साइकिल की साफ-सफाई कर रहा है।

एकदम खाली खाली सा है एक मोटरसाइकल पर बोरा बांधा गया है।

वहां पर एक व्यक्ति टहलने आया हुआ है।